सामने की तरफ दीवार पे पोस्टर लगा हुआ है जिस पर बहामास स्पार्की पैरागन ये सब लिखा हुआ--

सामने में एक बड़ा सा पत्थर भी रोड के किनारे दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर एक शॉप का है जहां पे मैट्रेस कुर्सी वगैरह मिलता है सामने में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसने व्हाइट कलर का शर्ट और एक जींस पहना हुआ है।

यह तस्वीर रेस्टोरेंट का है यहां ऊपर में इंडियन रेस्टोरेंट रेड कलर से लिखा हुआ है।

उसके अगल बगल हरे भरे पौधे है और उसे लाइटिंग से सजाया गया है बाएँ तरफ़ एक लोहे का गेट दिख रहा है जिसका कलर ब्लू है।

तस्वीर एक ग्राउंड का है जहां पे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि निशाना लगाने आये है।

दाहिने साइड पे निशाना लगाने का स्तंभ लगा हुआ है सामने में एक बड़ा सा पोल भी दिख रहा है।

और अगल बगल बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं नीचे में घास है जिसका कलर ग्रीन है।

यह तस्वीर कोई पार्क का लग रहा है दाहिने साइड पे चार व्यक्ति खड़े दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में एक छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है जिसके सामने एक बहुत ही बड़ा पेड़ है और वहां पे एक बाइक भी लगा हुआ है।

यह तस्वीर फिर कोई गर्ल्स स्कूल का दिखाई दे रहा है क्योंकि वहां पे बहुत सारे लड़कियां हैं जिन्होंने रेड कलर और येलो कलर का ड्रेस पहना हुआ है।

यह तस्वीर एक कार के शोरूम का है। जिसके बाहर मर्सिडीज बेंज और ट्रिस्टर मोटर्स लिखा हुआ है।

लेफ्ट साइड मे एक टॉय है जिस पे वाइल्ड लाइफ एनिमल लिखा हुआ है।

और गेट लोहे का है जो की ब्लैक कलर का है वहां पे एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसने हेलमेट पहना हुआ है।

इस तस्वीर में दांयी तरफ एक ट्रक लगा हुआ है जिसका कलर औरेंज है और उसमें जय माता दी लिखा हुआ है और उसपे एक क़ाली मां पिक्चर भी बना हुआ है।

मस्जिद के सामने दो खिड़कियां हैं और एक बड़ा गेट है और उसके बगल में एक ताड़ का पेड़ भी लंबा सा दिखाई दे रहा है।

रेस्टोरेंट के सामने पांच गाड़ियां खड़ी है तीन वाइट कलर की कार है एक जीप है और एक छोटी कार है और दाएं तरफ पांच झंडे दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर एक शॉप की है जहां पे कपड़े मिलते हैं।

के सीलिंग और दिवाल का कलर व्हाइट है रूम के दोनों तरफ खिड़कियां हैं।

सामने की तरफ दीवार पे एक पोस्टर है। जिस पे गो बूम लिखा हुआ है।